ये एक खुबसूरत जगह हैं ।

एक कश्ती बहोत बड़ी जब के एक छोटी भी है।

एक आदमी मेरे सामने ठहरा हुआ हैं।

जो के साय चौकीदार हैं ।

ये दिल्ली का मशहूर दफ्तर है ।

सामने एक बड़ा सारा सोफ़ा अनुमा बेड नज़र आ रहा है ।

उनके छाव मे मोटरसाइकिल ठहरी हुई हैं।

ये एक खुबसूरत और खुला कमरा हैं ।

ये एक बहुत बड़ा समंदर हैं।

दरद मे दिखाई दे रहे हैं ।